यहां पर मुक्ता सिनेमा अ है और बुक माय शो लिखा हुआ है बोर्ड पे--

एक ऑफिस है यहां पर बहोत सारे कंप्यूटर्स लगाए गए हैं।

डाइनिंग टेबल है जिसकी कुर्सी ब्लू कलर की है या व्हाइट कलर की अह व्हाइट कलर का बेंच है उसमें --